सामने एक पानी का टैंकर भी दिखाई दे रहा है और वहाँ से व्हाइट कलर की रोशनी भी आ रही है कुछ लोग जो है बैंगन को काट रहे है और बैंगन का रंग ब्लैक दिखाई दे रहा है।

और उन्ही के पीछे एक बड़ा सा ब्लैक कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है साइड मे ही कुछ पीले कलर की लाइटस भी दिखाई दे रही है।